यहां पे माताजी का मंदिर है और यहां पे पूजा कर रहे हैं माता जी के मंदिर में और एक सामने बोहोत --

ये लड़की तबेले में पानी डाल रही है और ये लाइट भी जल रखी है यहां पे और पीछे कुछ रखा हुआ भी है और सामने --

प परिवार कल्याण संस्था पटना लिखा हुआ है और बहोत सारे लोग खड़े हैं यहां पर और उधर --

यहां पे नदी में लोग बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और उधर एक नाव भी है नाव में बहुत सारे बंदे बैठे हैं ओर ज --

अपलो स्ट्रोक हॉस्पिटल है यहां पे और दो तीन बंदे खड़े हैं हॉस्पिटल के सामने और ऊपर बादल से छा रहे हैं और एक बंदा यहां पे --

यहां पे कैफे हैं कैफे के अंदर दो तीन लड़कियां बैठी है वो लड़के भी बैठे हैं वो टी_वी भी लग रखी है और अच्छी लाइटें भी लग रखी है यहां से --

यहां पे सिटी बस खड़ी है और एक आदमी जा रहा है सामने से एक टैक्सी खड़ी है और इधर एक बंदा जा रहा है जो बैग लगाए रखा है।

बाइक वाले जा रहे हैं और एक बंद खड़ा हुआ सामने और पेड़ भी लगे --

और तीन चार बलफ भी लगे हुए हैं और दीवार पर अलग अलग प्रकार की फ्रेम लगी हुई है।

यहां पे कोट पैंट पहने हुए एक भैया खड़े हैं और शादी का माहौल है यहां पे।

और फूलों का दो हॉट भी बना हुआ है उसके सामने--

मैगी रूफ टॉप है यहां पे और सामने एक छतरी सी लगी हुई है दो तीन कुर्सियां भी पड़ी है।

इधर उधर फोन में देख रहे है और इधर जा रहे है ऊपर पेड़ है टीम के --

और सामने लकड़ियों का कुछ बना हुआ है और नीचे ब्लॉक लगी हुई है।

श्री अग्रवाल शिवशक्ति यात्री निवास हेतु उत्तर सुविधाए लिखा हुआ है और इसमें एक बंदा भी खड़ा है।

ए_सी कमरे भी लिखा हुआ है यहां पे कमरे भी अवेलेबल है और बहोत --